यहाँ पर चार चक्‍के खड़े हैं। यहाँ एक बड़ा सा घर बना है जिसमें एक मेन आदमी खड़े हैं।

कुछ लोग यहाँ सो रहे हैं और कुछ आद लोग खड़े हैं और यहाँ बहुत अच्‍छा रखा गया है।

यहाँ पर लोगों को बैठने के लिए सीमेंट के कुछ कुर्सियाे बने बना हुई है और --

यहाँ एक ट्रेन के इंजन जैसे बने हुए हैं और कुछ ओटो रिक्‍से खड़े हैं यहाँ पर।

पास में कुछ और फूल रखा हुआ है और पर यहाँ पर कुछ और भी है रखा हुआ।

और ऊपर कुछ पर्दे टगे हुए है और पास में एक टावर भी है और एक घर भी हैं।

सारे अलमारियो में कपड़े भरे हुए है और नीचे कुछ सामान भी रखा हैं।